पूजा करते है। घूमते है। इस मूर्ति का देखते है और आनंद लेते है।

यहाँ पर लेंटर डाला जा रहा है। यहाँ पर कई सारे सरिया हैं और बिजली की फिटिंग की गई है। यहाँ पर लोग आएगे छत पे टहलेगे घुमेंगे। यहाँ सिमिन्ट से डाला जायेगा और कई लोग आएगे यहाँ पर मजे लेंगे घुमेंगे।